बरारी पूल में है बगल में और बगल में बहुत सारा ऑटो आ रहा है जा रहा है आदमी सब भी आ रहा है जा रहा है और अगल-बगल गंगा जी भी है।